दिख रही है पानी में और सामने आगे की तरफ --

और उसके सामने ही टेबल पर कुछ बॉक्स रखे हुए हैं।

उसके बाजू पे जो बैनर है उसपे टी_एम_टी --

इस इमेज में सामने ही बर्तन में छोले--

और कुछ साइकिल का बैक साइड हिस्सा दिख रहा है सामने एक बड़ी टू मंजिला इमारत व्हाइट कलर की--

और इन्होंने तीनों ने व्हाइट कलर का ड्रेस पेहना हुआ है।

अ दुकान का दृश्य है जहां पर रेक में--

बहुत सारी मशीनें दिख रही हैं दीवार भी है।

आस एस_ए_डब्लू_ एच_एन_फ_व्हाई_एस --

दिख रही है ड्यू की भी बोतल नजर आ रही है।

जिसके ऊपर घास और पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और दूसरे पहले वाले टीले पर छोटे-छोटे पत्थर --

ऊपर की तरफ से नीचे भी दिख रहे है।

अ जमीन मिट्टी की नजर आ रही है उस पे ये छोटे छोटे पेड़--

इस इमेज में सामने एक शॉप का मंजर है जिसके ऊपर--

उसका लोगो भी साफ नजर आ रहा है और बाहर की तरफ --

और एक आदमी स्कूटी चला रहा है सामने ही दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है।

इस इमेज में एक लड़की नजर आ रही है जिसने ऊपर का--

इस इमेज में सामने ही कुर्सी और टेबल रखी हुई है जिस पे--

केचप की बोतल ग्लास रखा हुआ है।

इस इमेज में सामने ही एक कुछ--

इस इमेज में सामने ही लकड़ी के रैक्टेंगल शेप में--

बहुत सारे टुकड़े रखे हुए हैं और आगे की तरफ--

छोटे-छोटे बल्ब हैं जो जल रहे हैं और दूर अ --

इस इमेज में तीन फोर व्हीलर है एक ब्लैक और दो वाइट कलर की है और सामने ही रोड नजर आ रहा है।

और साइड से भी पत्थर दिख रहे हैं और ऊपर से भी छोटे-छोटे पत्थर और एक आदमी का--

इस इमेज में एक इमारत है जिसके ऊपर गोल--

और आगे की तरफ चौड़ी सी जगह खुली हुई है ऊपर आसमान और बादल दिख रहे हैं दूसरी तरफ--

और वो इमारत पे हैंड्स ऑन मोटर लिखा हुआ है।

इस इमारत में सामने ही पानी नजर आ रहा है और दूर से ब्रिज है उसके पोल भी पानी में नजर आ रहे हैं।

और उसमें कुछ आदमी है जो खड़े होकर पूजा कर रहे हैं उन्होंने धोती पहन रखी है और ऊपर उन्होंने कुछ नहीं पहन रखा है।

और आगे की तरफ दो लड़के हैं जिसने अह रेड और ब्लैक कलर का--

जहां पे रेक में बहुत सारे पैकेट्स में --

गुबारे ऑरेंज और वाइट कलर में बिखरे हुए हैं।

अह जो वो भी नजर आ रही हैं नीचे जमीन की तरफ अह जमीन घास वाली दिख रही है और साइड से एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

अह जल रहे हैं लाइटिंग दे रहे हैं सामने ही व्हाइट कलर की दो छोटी बड़ी फ्रिज रखी हुई हैं।

कैंडल पकड़ रखे हैं जो कि जल रही है और पीछे की तरफ भी कुछ लोग खड़े हैं।

और बीच में एक बड़ी सी टेबल है जिसके किनारे बहुत सारे लोग बैठे हैं सामने की तरफ एक बूढ़े --

इस इमेज में किसी बिल्डिंग के नीचे का हिस्सा है जहां पे एक ब्लैक कलर की फोर व्हीलर खड़ी है।

इस इमेज में दो पुरानी इमारत नजर आ रही हैं।

और सामने ईंट का ढेर रखा हुआ है बीच में से थोड़ी सी--

सामने ये किसी बिल्डिंग के अंदर का मंजर है जहां पे टाइम्स एकेडमी लिखा हुआ है।